दो सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हैं जो नीले कपड़े पहने हैं और एक आदमी जैकेट पहनके नीचे खड़ा हुआ है।

जहां पर काफी ढेर सारे पर्दे लगे हुए हैं ऊपर पंखा लगा हुआ है।

सामने एक फैक्ट्री दिख रही है जो नीले कलर की और सफेद कलर की है।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

जो मारवाड़ी ललितपुर में है इसके अंदर काफी सारी फैसिलिटी हैं।

और इस घर के पीछे ढेर सारे दो खजूर के पेड़ और बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में कुछ लोग फर्श पर खड़े हुए पेपर लेकर देख रहे हैं।

ऊपर यहां पे घर बना हुआ है नीचे फर्श काले कलर का उसपे सफेद कलर की पट्टी है पीछे बोर्ड भी लगा है नीले कलर का और लाइटे भी जलते हुए नजर आ रही है।

यहां पर काफी वैन मोटरसाइकिले है और उसपे आदमी चलते हुए नजर आ रहे है निचे रोड भी है।

और पीछे जो घर है वो हल्के पीले और लाल कलर में है।

इसके अंदर भी घास फूस काफी बढ़ियाँ दिख रहा। पेड़ पौधे काफी बड़े इसके अंदर लगे हैं।

इस तस्वीर में कुछ लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं।